ये कोई स्विमिंग पूल नजर आ रहा है बड़ा विशाल-सा स्विमिंग पूल है गर्मियों की छुट्टियों में --

यह कोई बस स्टॉप नजर आ रहा है।

यह कोई बुक की दुकान नज़र आ रही है जिसका नाम मिथिला बुक सेंटर ऐसा लिखा हुआ है।

और रात का ये चित्र फोटो है ऐसा लग रहा है और एक-दो कुत्ते भी नजर आ रहे हैं।

कोई गवर्नमेंट की जगह नजर आ रही है जहां पर --

यह कोई जगह नजर आ रही है जहाँ पर --

जहाँ पर राइड्स नजर आ रही हैं।

इतना पानी नहीं है परन्तु सिर्फ पैर के तलवे तक पानी आये उतना ही नजर आ रहा है।